यहां एक मंदिर की तस्वीर है जहां पर सामने की ओर एक बांग का सिंहासन रखा हुआ है।

आसपास कई लोग बैठे हुए हैं उन्होंने लाल और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं यहां से लाइट दिखाई दे रही है।

कई गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई है एक व्यक्ति भी यहां से दिखाई दे रहा है।

यहां पे गुलाबी कलर का पर्दा लगाया हुआ है और दो हार्ड दिखाई दे रहे हैं जिनको --

एक फल फ्रूट की दूकान है जिसमे कई फल फ्रूट रखे हुए है और इसपे लाल कलर का कपड़ा बिछाया हुआ है यहाँ तरबूज--

और दो लोग इसके ऊपर चढ़ते हुए जा रहे है आसपास पेड़ दिखाई दे रहे है ऊपर यहाँ पर झंडे लगे हुए है और यहाँ से आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक कपड़े की दूकान की तस्वीर है जहाँ पर की कपड़े टंगे हुए है यहाँ एक शर्ट दिखाई दे रही है।

इन कपड़ों को अलमारी के अंदर रखा हुआ है।

यहाँ एक मेडिकल स्टोर की तस्वीर है जिसमे की एक काउंटर दिखाई दे रहा है जो चोकलेटी कलर के है अंदर कई दवाइयाँ दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक होटल की है अ जिसमे की कई कांच दिखाई दे रहे है ऊपर और नीचे की तरफ--

और उसके आसपास भी कई पेपर दिख रहे हैं जिसपे की रंग बिरंगी आकृतियां बनी हुई हैं और यहां पेपर जमीन के ऊपर रखे गए हैं।

जहां फर्श लगी है जो फर्श सफेद और कफे कलर की है।

यहाँ एक ग्राउंड की तस्वीर है जहाँं पर एक्सरसाइज की कई मशीनें दिखाई दे रही है और कई लोग यहाँ पर खड़े हुए है और कई --

एक टीचर भी यहां पर खड़ी हुई है जिसने कि चश्मा लगाया हुआ है यहां एक पंखा दिखाई दे रहा है।

यहाँ तस्वीर एक अस्पताल की दिखाई दे रही है जहाँं पर एक डॉक्टर फिजियोथेरेपी करता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां एक ठेला दिखाई दे रहा है जिस पे आम तरबूज और सेब रखे हुए हैं यहां एक कैरेट रखी हुई है।

पौधे और पेड़ लगे जो कि हरे रंग के हैं एक मग्गा दिखाई दे रहा है जिसमें कि चाय रखी हुई है।

यह तस्वीर एक रोड की है जहाँ पर एक ऑटो खड़ा हुआ है एक व्यक्ति है जो की यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है कई ठेले भी यहाँ पर दिखाई दे रहे है।

कई पहाड़ भी यहां से दिख रहे हैं और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे रंग के हैं।

एक कांच की अलवारी भी यहां पर दिख रही है कैसी दिखाई दे रहा है।

यहां से टीपी भी दिख रही है।

और यहां से आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का है।

एक मकान बना है जो कि पीले रंग का दिखाई दे रहा है।

और वहां राखी बनाते हुए दिख रही हैं।

पर बहोत सी स्लाइडें दिखाई दे रही है जैसे की--

आस-पास पेड़-पौधे यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे --

जो कि सफेद रंग का है कई पेड़ --

जो कि हरे रंग के हैं और यहां से आसमान दिख रहा है।

जो सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।